जिससे हम अप हमारे अंदर क्या रोग है उसका पता लगा कर --

इस्टे सभी बच्चे बड़े आनंद से खेलते हैं।